और उसका एक गेट मुझे दिख रहा है और उसके राइट साइड में --

और राइट साइड में किसी का घर है जो कलर जो कि येलो कलर से पेंटेड है और नीचे में पत्थर वगैरह भी दिख रहे हैं।

चर किसी मूर्ति बनाने वाले के यहाँ का है जहाँ पर मूर्तियाँ बन रही हैं और वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं लेफ्ट साइड में एक चौकी पर खड़ा होकर के एक वर्कर काम कर रहा --

फिश शॉप का है और जहाँ पर नीचे में बहुत सारे फिशेस दिख रहे --

लगा हुआ है कैलेंडर और उसके बगल में एक एसबीआई का ऑफिस है और ऊपर में एक एसी का लगा हुआ वेंटिलेशन कोऔर लाइट वगैरह लगा है नीचे फ्लोर --

पिक्चर किसी कंस्ट्रक्टिव साइट का है जिसमे की एक बड़ा सा ट्रैक्टर है उस ट्रैक्टर के पीछे एक बड़ा सा कुछ सामान रखने का दिख रहा है हार्वेस्टिंग टाइप मटेरियल का कुछ।

जिस पे टीलक्स लिखा है और लेफ्ट साइड में कुछ घोड़ा वगैरह रखा है और उसके आगे कुछ चार इंसान खड़े हैं और राइट हैंड में भी कुछ लोग बैठे हैं ।